ये हो सकता है दुकान और ऊपर मे कुछ-कुछ बोर्ड टंगा हुआ है इंडने सोलंकी गैस गैस सर्विस पतान यहाँ पर गैस सर्विस होता है।

छोटे कप है और हर एक कप का डिजाइन एक दुसरे से अलग है।

सामने में यह एक खाने का बुफे लगा हुआ है।

ये एक मेंन रोड का पिक्चर दिख रहा है मतलब मेंन रोड जो जी_टी रोड होता है।

तो इसपे अ हम देखरे है बोहोत सारे अ गाड़ी आना जाना कर रा है बोहोत सारे लोग साइड से--

सामने में यहाँ पर एक कॉफ़ी स्ट्राल दिख रहा है मतलब कॉफ़ी स्टाल का पैनल लगा हुआ आर_ के कॉफ़ी स्ट्राल और यहाँ पर सामने में --

यह एक घर है और छोटा सा घर है और जो की बन रहा है मतलब कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है घर पे और यहां पर बालू--

ये ईंटें और उसके बाद अ गिरा हुआ है कुछ कुछ वर्कर दिख रहे हैं काम करते हुए यहाँ पर--

ये एक टॉयलेट है वाशरूम है और ये मेंस टॉयलेट है और यहाँ पर वाशबेसिन दिख रहा है और--

हॉल हे ये डाइनिंग हाल उम जो घर का एक हाल एरिया है वो है यहाँ पर एक बड़ा सा सोपा रखा हुआ हे सेंटर टेबल रखा हुआ है।

यहाँ पर एक जाकी दिखरा है सामने में एक जाकी जारी है ता एक सेक्टर के उपर--

उस रोड से झाकी जा रही है रोड के सामने बोहोत सारे लोग दिख रहे है यहाँ पर --

सामने में वो है अ जो जिसपे एम लगाते है उसपे एम लगाई जा रही है लडकी लोग--

रेड येलो पिंक फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया है जब जो शादी का जो गाड़ी होता है दूल्हा का गाड़ी उस टाइप का डेकोरेशन किया हुआ है।

एक स्टेज बनाया है कुछ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए चेयर पर ये शायद कोई स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है यहाँं पर कोई एक स्कूल का बैनर लगा हुआ है।

ये एक ये रूम है ई_सी_जी होता है ना ओ रूम है।

और अ लेक को सजाया है मतलब ऊपर में कुछ कुछ लाइटिंग दिख रही है और बहुत ही सुन्दर एक बड़ा सा लेक है।

यहाँ पर कुछ फ्लावर के पॉट रखे हुए है कुछ कुछ लम्बे कुछ गोल टाइप के अ यहाँ पर--

यहा पे बोहोत सुन्दर अ इसमें अ ये किया हुआ है प्रिंट किया हुआ है।

और रिक्से काफी लोग आते जाते हुए दिख रहे है यहाँ पर और --

ये स्टेशन कुछ अ अ जो बड़ा टाइप का ही है थोडा --

यहां पर एक अ ये अम गाड़ी दिख रहा है येलो कलर का एक गाड़ी यहां पर है।

यहा पर पूजा की गई है और एक आदमी है जो कि पानाम हाथ जोरे खड़ा है यहा पर--

प्लांट लगाते हैं उस टाइप का ये दिख रहा है अ बहोत सारे यहां पर प्लांट दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के।

अ लोन पे कुछ कुछ छोटे छोटे से पोधे लगाये हुए है कुछ कुछ --

ये एक अ पोस्ट ऑफिस हे आ पोस्ट ऑफिस हे पुराना सा एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ हे सामने में--

अ ये एक जा रहा है अ खेत की जो मिटटी है उसको खोदा जा रहा है।

ये खाने का रेस्टोरेंट है बड़ा सा अ जहां पर बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं और बड़ा सा एक टेबिल दिया हुआ जो खाने का जो टेबिल है वो--

कुछ कुछ गिलास और एक मेन्यु कार्ड दिख रहा है और आस पास में ये भी ऐसा ही है।

यहां पर दीवार पे एक उम्म बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा हुआ है थोड़ा सा पुराना दिख रहा है और यहां पर बहुत सारे लोगों का पिक्चर दिख रहा है।

अ सब ने एक ग्रुप पिक्चर क्लिक कर वाया शायद किसी का ये शादी का ये पिक्चर है बीच में एक दूल्हा दुल्हन टाइप का भी दिखरा है।

आसपास में और भी ऐसे स्टॉल टाइप का लगा हुआ है मतलब दुकान टाइप का कुछ कुछ लोग आए हुए है यहां पर सब्जी खरीदने।

ये किया गया है बनाया गया है सामने का जो वाल है।

यहाँ पर दो टो टोटो ख़राब है दो दिन यहाँ पर टोटो नही है ये रिक्शा है।

ये एक अ मेकअप रूम हैं अ सामने में कुछ चेयर हैं बैठने के लिए और अ सामने में बड़ा बड़ा सा--

है और बच्चो के कुछ कुछ सामान है यहाँ पर खेलने के लिए --

अ बेटने के लिए अ बहोत क्यूट क्यूट से समान है जो बच्चो को पसंद आते है।

अ जो ऐसे नकली जो फ्लावर होते हैं वो अ बहुत क्यूट क्यूट क्यूट क्यूट से सामान भी रखे हुए हैं कुछ टाॅयस दिख रहे हैं यहां पर--

एरिया में एक पेड़ टाइप का बना हुआ है किनारे टाइप का अ और यह एक बड़ा सा रास्ता दिख रहा है जाते हुए--

अ क्लास वन टू टेन सी बी_एस_टी पि_एस_बी का एक बेनर लगा हुआ है यह एक कोचिंग क्लास है अ--